यहां पे कुछ लोग पूजा कर रहे हैं तो कुछ मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं।

यहां पे एक छोटू सा झोपड़ी भी है और इसके--

और यहां पहाड़ प्रतीत हो रहा है।

और यहां पे तरह तरह के मसाले जो रेगुलर बेसिस में यूज होते है वो सभी यहां--

जहां पे बहोत ही अच्छी खाने रखे हुए हैं।

जो काफी सुंदर और हरे भरे और कलरफुल पत्तों में खिले हुए--

और यहां पे एक पुल है जो बायर्स को--

यहाँ शेड के बाहर एक डाला रखा गया है।

पंखे भी लगाए गए हैं और यहां पे जो लोग आए हैं वो काफी सज धज कर आए हैं।

यह एक पेट्रोल पंप प्रतीत हो रहा है। यहां पे बहोत सारे वाहनें आए हुए हैं पेट्रोल लेने हेतु।